इस फोटो में मुझे छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में मुझे रूम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच की खिड़कियां दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे लाइटें दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे चीनी मिट्टी की ट्रे दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे मेडिकल स्टोर दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे काँच की खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक किला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे चैनल गेट दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे मछली दिखाई दे रही है।